एक बड़ी गेट नजर आ रही है जो ब्लैक है और वह जालीदार है।

टाइल्स चरखुट्टा सा दिखाई दे रहा है गेट नजर आ रहे हैं।

बैलून की कलर ऑरेंज ग्रीन ब्लू है एक आदमी बैठा हुआ है।

यहां पे फूल खिले हुए हैं फूल की कलर ऑरेंज है और कुछ फुल पिंक है।

कुछ लकड़ी का बॉक्स रखे हुए हैं जिसपे खाना रखा हुआ है

थर्माकोल की मदद से छोटे छोटी कुछ मंदिर टाइप का बना हुआ है।

वहां पे एक केतारी के पत्ता रखा हुआ है।

जैसे होपवेल हॉस्पिटल नूर टावर बुक्स ऐन स्टेशनरी शॉप ।

इसपे डेंटिस्ट की लोगों बनी हुई हैं।

इस दृश्य में मस्जिद की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर एक जनमाज बिछे हुए हैं।

बड़ी बड़ी पाया नजर आ रही है सामने से कुछ गोला गोला सा--

जो बहुत बड़ी सी है नीचे सीढ़ियां दिखाई दे रही है।

की छत नजर आ रही है जहां पे करकट लगे हुए हैं एक आदमी ने--

कबर्ड बने हुए है जो की उसपे सामान रखा हुआ है।

दो चेयर और रखे हुए नजर आ रही है सामने एक कपबोर्ड बना हुआ है।

प्लास्टिक रखे हुए नजर आ रहे हैं और भी लोहा के अलमीरा दिखाई दे रहा है।

ये चेयर रखी हुई है जो ब्लैक कलर की है दीवार की कलर व्हाइट है।

जहां पर एक बड़ी सी बोर्ड लगाकर सर्विस फैसिलिटी के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है।

इसकी छते एलिवेटर की है ल एक काउंटर दिख रहा है जिस पर मॉनिटर रखा--

तीर की रेलिंगे लगी हुई है।

कुछ डिशेस रखे हुए हैं जिसके बगल में स्पून रखी हुई है।

दो डब्बे रखे हुए नजर आ रहे हैं जिनपे शहनाज हुसैन लिखा हुआ है।

उसपे दो लड़की के पिक छपी हुई है एक और डब्बा है जिस पे गोल्ड प्लस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और भी बहुत सा--